के सामने एक ठेला लगा हुआ हैं।

इसमें ऊपर बोर्ड में लिखा है इसे किराए से देना है और--

यहां कमरे मे दोनों साइड लोहे की अलमारियां लखी हुई है और उसमें बहुत सारा--

बहोत सारी सामान रखे हुए हैं और बहोत--

बाटलें भी दिखाई दे रही हैं और कुछ दवाइयां भी रखी हुई हैं।

और सामने एक पटिया भी रखी हुई दिखाई दे रही है और सामने की दीवार है जो बहुत--

कुछ झालर भी लगीं हुई है और इस यहां पर एक आदमी अपने सर पर टोकरी और कुछ--

और सामने की तरफ कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं और घर के सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं।

और कुछ ब्लैक कलर की कुर्सीयां भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

एक सामने बोर्ड पर जिला एवं स्वास्थ्य न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश--

पेड़ पौधे लगे हुए हैं और सामने एक गेट पर कुछ लोहे का--